नमस्कार jmol में enzymes के 3d models पर इस tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में human jmol panel पर human pancreatic hexokinase के structure को load करना सीखेंगे
secondary structure के display को संशोधित करना सीखेंगे
active यानी सक्रीय site पर amino acid residues को highlight करना सीखेंगे
enzyme के substrate और कोcofactors को highlight करना सीखेंगे
और protein के लिए ramachandran plot को देखना सीखेंगे
इस tutorial के लिए आपको basic biochemistry का ज्ञान होना चाहिए
और jmol application window के basic operations के साथ परिचित होना चाहिए
कृपया jmol application के क्रम में proteins और macromolecules tutorial को देखें
यह निम्न link पर उपलब्ध है
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ ubuntu operating system version 1204
jmol version 1222
java version 7 और mozilla firefox browser 220
jmol window खोलें और hexokinase enzyme का structure load करें
मैं internet से जुडी हुई हूँ इसलिए मैं structure को सीधे pdb website से load करुँगी
ऐसा करने के लिए file menu खोलें नीचे जाएँ और get pdb विकल्प पर click करें
screen पर एक input dialog box दिखता है text box में hexokinase के लिए चार अक्षर का pdb code 3idh type करें
यह code protein data bank website से प्राप्त किया गया था
अगर आपके पास कार्यकारी internet connection नहीं है तो tool bar पर open a file icon प्रयोग करके मौजूदा pdb file खोलें
ok button पर click करें
hexokinase का 3d structure जिसे glucokinase भी कहते हैं screen पर खुलता है
file menu प्रयोग करके console window खोलें
जैसा console पर प्रदर्शित है panel पर substrate glucose के साथ human pancreatic glucokinase के लिए structure है
console को बंद करें
panel पर हमारे पास hexokinase का ball और stick model है
panel पर protein model से water molecules को हटायें
यह प्रक्रिया jmol tutorial proteins and macromolecules में विस्तार में समझायी गयी है
hexokinase enzyme के बारे में
hexokinase 465 amino acids का monomeric protein है
यह दो domains एक बड़ा domain और एक छोटा domain रखता है
इस enzyme के लिए सक्रियsite दो domains के बीच cleft यानी दरार में स्थित होता है
hexokinase के लिए सक्रियsite 3 amino acid residues रखता है: 204 पर aspergine position 231 पर aspergine और 256 पर glutamic acid
alphadglucose इस enzyme के लिए substrate है
अब jmol panel पर वापस जाते हैं
हम सक्रिय site पर enzymes के घटकों जैसे : substrate cofactors या amino acid residues को highlight या चुन सकते हैं
एक विशेष घटक को चुनने के लिए right click प्रयोग करके popअप menu खोलें
select विकल्प तक नीचे जाएँ
submenu से proteins by residue name चुनें
यहाँ अलगअलग amino acid सूचीबद्ध हैं
इसको चुनने के लिए amino acid के name पर click करें
amino acids शीर्षकों जैसे polar nonpolar basic acidic uncharged आदि के अंतर्गत वर्गीकृत भी किये गए हैं
metal ion potassium और substrate glucose hetero menu में सूचीबद्ध हैं
हम substrate binding site को आसानी से ढूँढने के लिए enzyme के display को संशोधित कर सकते हैं
अब हम protein के परमाणुओं के रंग और display को बदलते हैं
popअप menu खोलें select पर जाएँ और protein विकल्प तक नीचे जाएँ all पर click करें
दोबारा popअप menu खोलें style तक जाएँ फिर scheme तक जाएँ
अब हमारे पास panel पर protein sticks display में है
अब रंग बदलने के लिए दोबारा popअप menu खोलें color atoms पर जाएँ और blue विकल्प पर click करें
हमारे पास screen पर hexokinase का model blue रंग में और sticks display में है
substrate को देखें cleft में alfadglucose ball और stick display में है
substrate को highlight करने के लिए popअप menu खोलें select पर जाएँ फिर hetero और glcalfadglucose पर click करें
popअप menu पर दोबारा click करें style तक नीचे जाएँ scheme और sticks विकल्प पर click करें
रंग बदलने के लिए दोबारा popअप menu खोलें color atoms पर जाएँ और white विकल्प पर click करें
panel पर स्पष्ट रूप से हाईलाइट किये हुए substrate की पोज़ीशन के साथ hexokinase का model है
हम amino acids को highlight करने के लिए सक्रिय site पर उनका रंग बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए हमें console window पर commands type करना है
जैसा पहले उल्लिखित है सक्रिय site पर शामिल amino acids हैं पोज़ीशन 204 पर aspergine पोज़ीशन 231 पर aspergine और 256 पर glutamic acid
file menu प्रयोग करके console window खोलें console पर click करें
मैं console window को magnify करने के लिए kmag screen magnifier का प्रयोग कर रही हूँ
$prompt पर type करें: select square brackets में aspergine के लिए asn brackets बंद करें 204 जो पोज़ीशन है semicolon color atoms orange
enter दबाएं
ध्यान दें कि aspargine residue के परमाणु अब orange रंग में हैं
board पर अप arrow button दबाएं और command को edit करें
amino acid की पोज़ीशन को 231 और परमाणुओं के रंग को red से edit करें
enter दबाएं
दोबारा अप arrow की दबाएं और amino acid के name को glu जोकि glutamic acid है और पोज़ीशन को 256 से edit करें
परमाणुओं का रंग green और enter दबाएं
panel पर हमारे पास substrate और हाईलाइट की हुई सक्रिय site के साथ hexokinase का 3d model है
यहाँ purple रंग में दिखाया गया potassium परमाणु भी model में हाईलाइट किया हुआ है
हम jmol में एक विशिष्ट protein के लिए ramachandran plots भी दिखा सकते हैं
console पर $prompt पर type करें plot ramachandran
enter दबाएं
screen पर हमारे पास hexokinase के लिए ramachandran plot है
database से pdb files प्रयोग करके भिन्न enzymes load करने की कोशिश करें
secondary structure के display को बदलें
इसको सारांशित करते है इस tutorial में human सीखा pdb प्रयोग करके human पैन्क्रीऐटिक हेक्सोकाइनेस hexokinase के structure को load करना
secondary structure के display को संशोधित करना
सक्रिय site पर amino acid residues को highlight करना
* substrate और enzyme के cofactors को highlight करना
और proteins के लिए ramachandran plot देखना
नियत कार्य में: jmol panel पर enzyme lysozyme की dot pdb file load करें
enzyme से जुड़े substrate को highlight करें
सक्रिय site पर amino acids को highlight करें
hint: pdb database से lysozyme की pdb file प्राप्त करें
इस url पर उपलब्ध video देखें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
spoken tutorial project team:
कार्यशालाएं चलाती है और प्रमाणपत्र वितरित करते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें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
आई आइ टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद